जो बहुत अच्छी लग रही है।

बहुत सारे कर्मचारी है जो मिलकर काम कर रही है।

मंदिर चारों तरफ यहां पर है सफेद रंग के --